यह एक किताब का स्टोर है जहाँ पे हमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं और यह किताब बहुत ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध किताब है जिसे हमें अतीत के बारे में पता चलता है।

यहाँ पे एक कछुए पालन का कुआँ दिखाया गया है जहाँ पे बड़े-बड़े कछुओं को पाल के रखा गया है और कछुए से बहुत ही महंगा चीज़ है।